इसमें लड़कों के लड़कियों के बच्चों के सबके कपड़े हैं और ये अलग अलग सेक्शन में रखे गए हैं और इसमें एक फोटो --

दिशा की तरफ जाते हैं कुछ झूले की तरफ जा रहे होंगे कुछ शहर की तरफ जा रहे होंगे कुछ खाने के लिए दुकान पे जा रहे हो--

चुन्नी लगा के ये गेट लोगों की एंट्री के लिए बनाया जाता है।

या फिर कोई भी ऐसी जगह जहां पे कस्टमर का आना जाना हो वहां पे अक्सर दिखते हैं और हमें डे टुडे लाइफ में काम आते हैं।